जेंट्स है। है सब जेंट्स का ही काफी बड़ा शोरूम है। लाइट्स लगी हुई हैं। व्हाइट कलर का है।

यहाँ पर दो लोग खड़े हैं।

इस तस्वीर में देख सकते है। ये रात कि तस्वीर है और --

यहाँ पे दो लाइटे लगी हुई हैं। सूरज दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे पेड़ हैं। लाइटे जल रही हैं और --

इसका कलर है चोकोलेटी पीला और --

पुस्तक कला की दुकान है और यहाँ पर काफी सारे खाने हैं जो भरे हुए हैं।

और उसके पास चारो ओर दो तीन लड़के हैं। जिनके हाथ में झंडा है देश का और बैठे हुए हाथ --

और पीछे का नजारा तो काफी अच्छा ख़ूबसूरत है। यहां पे काफी सारे लोग हैं।

सामने बेंच पड़ी है। उसके पास चारो ऑर खुर्शियाँ है।

और सामने एक लेडी है।

और बलून्स भी काफी अच्छे हैं।